दाढ़ी भी बनवा सकते हैं बहुत बढ़िया दुकान है पत्ते बत्ते लगाकर फुलवाड़ी लगा रखी है।

अच्छा सुविधा बना रही है लाइट्स वाइट्स पंखे पंखे सब है इसमें।

जागरण में ही ऐसी डायोकरैशन होती है।

यहाँ तो ऊपर कपड़े भी टंग रहे हैं। पता नहीं बाजार है किसी चीज का। हमारे यहाँ क् --

काफी अच्छे जूते मिलते हैं बाटा के शोरूम में।

कितने अच्छे तरीके सज रखे यहाँ पे फल।

नया एक गेट कित्ता अच्छा लग रिया है यहाँ।

इसकी जाली कितनी बढ़िया लग रहीं है यार। उसके अंदर जा लो है। लॉक कर दो ख् --

इतनी बढ़िया मशीन लग रही है बे ये तो।

एक आदमी दिखाई दे रही काम करता हुआ खेत में।

और गाड़ी के साथ साथ पीछे महजीद भी है।

ये तो पार्क है भाई और पार्क में कितने सारे झूले हैं भाई।

यार बच्चे दौड़ रहे हैं यार ये तो।

सुबह-सुबह का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का रेस लगा रहे हैं बच्चे।

शोर बजा में पेनल भी लगाया है।

यार ये तो यार हरियाली फुलवारी है यार।

ये पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं यार।

और बच्चों के भी कपड़े हैं यहां पे और अच्चे कपड़े हैं।

और ये भाई ये पार्क है। पता नहीं किस चीज का पार्क है। --

कितने अच्छे-अच्छे खिड़की लग रही है।

ये तो भाई फल ठेले में बिकर दिखे हैं भाई।

अंदर चौबीश तिल्लीया होती है भाई।

अरे यार कितना बड़िया लग रिया भाई। व्हाइट पैंट हो रहा येलो पैंट हो रहा है भाई। लग रहे --

कंकाल के बारे में बहुत अच्छे-अच्छे तरीके समझाते है कंकाल --

सजावट हो रही है मस्जिद के भाई।